आ यहां कोई इवेंट मनाया जा रहा है अंदर सेट्स से बने हुए हैं सेट्स बहुत अच्छे डेकोरेशन की गई हैं बहुत सारे लोग यहां पर जमा हैं।